दूल्हों को सजाया जाता है मेकअप किया जाता है फेशियल किया जाता है हेयर कटिंग दाड़ी बनवाने नाखून कटाने के लिए --

यह बहुत ही टेस्टी होता है बहुत बच्चे खा --

यह एक चर्च है इस चर्च में ईसाई धर्म के लोग यहाँ चर्च में प्रार्थना करने शादी विवाह करने के लिए चर्च मे आते है उ लोग का चर्च में ही शादी होता है मोमबत्ती यहाँ आ के जला--

यह एक नदी है यह नदी काफी चौड़ी है इस नदी में बहोत सारे लोग नहाने के लिए आते है यहाँ पे जानवर पानी पीता है|

यह एक बहोत बड़ा डैम है यह डैम बहोत ही बड़ी है इस डैम में बहोत सारे लोग घुमने के लिए आये हुए है डैम में लोग मछली पकड़ने के लिए आते है |